और साइड में एक चाप्पाकल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे।

यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं जो रंग-बिरंग के है।

ये छोटी बड़ी हैऔर यहाँ पे बहुत बड़ी --

यहाँ पे एक गिरगिट जैसा दिख रहा है जो सजाया हुआ है यहाँ पे

रोड है उस का जो मिट्टी है वो अजीब सा रेड रेड सा दिख रहा है और यहाँ सामने में एक बाइक खड़ी है जिसका --

और यहाँ पे कुछ विंडोज भी दिखाई दे रहा है और सामने में कुछ घास वगैरा है खली जगह है।

रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है और ये --

इस पानी के बीच में गाड़ा गया है उधर साइड में भी एक गड्ढा हैजिसमे --

एक गेट जैसा भी दिख रहा है कुछ हुक्स मारा हुआ यहाँ पे --

यहाँ सामने में एक घर बन रहा है दिखाई दे रहा है।

आ यहाँ पे जो भगवान लोग हैं वहाँ पे माला पेहनाया हुआ है फूल --

यहाँ पे सामने में बॉउंड्री दिया हुआ है थोड़ा-थोड़ा --

एक जेंट्स उधर जा रहे हैं | एक वहाँ पे खड़े हैजहाँ पे --

छोटा-छोटा वहाँ पे कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है फूल और --

वाइट और पीला कलर में मंदील को पेंटिंग किया हुआ है।